यह फोटो मस्जिद की अन्दर की है जहाँ रेड कारपेट बिछाए गए हैं यहाँ पे कुछ मुसलमान बेठ कर नमाज पढ़ रहें हैं।

यह फोटो अजन्ता डेरी स्टोर वाले की हैं जहां दूध से बनी हुई ढेर सारे प्रोडक्ट्स पाकेट पैक्ड हुए मिलते हैं।

यह एक मोम के बने पुतले से बनाई हुई म्यूजिकल --

व्यक्ति ने टल्ली ली हुई है इस से वो टल्ली मसाले को मासता दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक लडकियों से जुड़े कोस्मेटिक की दुकान है जहां लडकियों के बैंगल झुमके --